ये एक प्ले-ग्राउन्ड है। जहाँ पर दो पेड़ एक साथ लगे हुए है। वही एक बच्चा यल्लो कलर की शर्ट पहने हुए है। ब्लैक पेंट पहने हुए उस पेड़ पड़ चढ़ा हुआ है बीचों-बीच। वही पेड़ पीछे एक और बडा सा पेड़ है जोकि --

पेट्रोल पंप के बाजु से एक ट्रक भी खड़ा हुवा है वाही कुछ गाडिया पार्क पर लगी हुयी है।